ये दर्शको को बैठने के लिए बनाया गया है और इस टेंट हाउस का नाम है दर्शन टेंट लाइट एंड डेकोरेशन ।

और इसके सामने सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और उसके ऊपर ॐ का चिन्ह भी बना हुआ है जो अच्छा लग रहा है देखने में।

बच्चों को खेलने वाला बनाया गया है यहाँ पर बच्चे आकार लुत्फ उठाते हैं।

यह एक वाटरफॉल है जोकि प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है और यह दिखने में अत्यंत सुंदर लग रहा है।

यह सड़क का किनारा है जहाँ पे एक दुकान लगी हुई है। कोई ठेले वाला है। उसके बगल में --

यह किसी गार्डन का दृश्य जहां पर हरे भरे फूल पौधे और एक गेट बनाया गया है।

मंदिर के अन्दर दो लोग बैठे हुए हैं जो कुछ बात कर रहे है और ये लोग भगवान में बोहोत निष्ठा रखते हैं इसलिए चप्पल को बाहर निकले हुए हैं।

यहां पर एक औरत जा रही है सड़क पर और वो अपने सर पर कुछ लादे हुए है।

यहाँ पर कुछ पाव भी रखे हुए हैं इसमें मोमोज और बर्गर मैक्रोनी मोमोज चाउमीन स्प्रिंग रोल प्रजापति फास्ट फूड यह एक ठेला है।

और यह प्रकृति की गोद से बहता हुआ वॉटरफॉल देखने में बहोत ही सुंदर लग रहा --